और सामने बहुत सारे चप्पल भी रखे हुए हैं।

घर को ईटा और सीमेंट से बनाया हुआ है।

पीछे में दीवार भी दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे एक छोटा सा घर दिखाई दे रही है।

दीवार का रंग ऑरेंज है और सफेद रंग का लाइट बल्ब वह भी दिख रहा है।

ई फोटो में मुझे एक मॉल दिखाई दे रहा है।

रास्ता के किनारे इलेक्ट्रिक पोल्स वायर और टावर भी लगाया हुआ है।

सीलिंग पर सफेद रंग का ट्यूब लाइट लगाया हुआ है और काला रंग का फैन दीवार पर सफेद रंग का ए_सी भी लगाया हुआ है।

दो गाड़ियां भी पार्क किया हुआ है।

फोटो में मुझे एक समुंदर दिखाई दे रहा है।

और एक बरा सा मगरमच्छ भी दिख रहा है।

नदी के किनारे बहुत सारे--

दीवार का रंग पीला और सफेद है।

जहाँ पर बहोत सारा पौधा और फूल भी लगाया हुआ है।

दुकान में सफेद रंग के लाइट बल्ब जलते हुए दिख रहे हैं।

जहां पर वेंटीलेटर भी लगाया हुआ है।

यहां पर फेडरल बैंक लिखा हुआ है।

दुकान के बाहर एक के_टी_एम बाइक भी रखा हुआ है।